इस चित्र मे एक बहुत ही पुराना किला नजर आ रहा है वो जो की बहुत सुंदर दिख रहा है बाहर की और कुछ लड्कीया मौजूद है जो की जिन्स टी शर्ट पहनी हुई--

चित्र में एक सुपर मार्केट नज़र आ रहा है। सुपर मार्केट मे ढेर सारी चीज़े मौजूद है खाने के लिए नीचे दूसरी और मैगी खाने की सामान नज़र आ रही है।